इन्होंने चप्पलें पहनी हुई हैं और आधे कपड़े में चल रहे हैं। सामने एक आदमी येलो कलर की शर्ट में दिख रहा है।

लंच डिनर पार्टी करने के लिए एक ढाबा जैसा दिख रहा है।

लोग यहाँ पर आके बैठ कर बातें करते हैं और खाना खाके जाते हैं। काफी सुंदर होटल है।